पेड़ है बड़ा वाला उससे बैंबू का सीरी भी है।

बैंबू से वहां कुछ लगा के है।

उसके अंदर बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

आसमान भी बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा है।

ये लोग का बीच में एक बड़ा सा पोज भी लगा के रखा हुआ है।

अंदर में एक लाइट भी दिखाई दे रहा है।

साइड में लोग भी है।

अंदर में बहुत सारा लाइट्स भी है।

एक लड़का चेयर में बैठ के है।

फेंसिंग बना के है बम्बू से।

येलो कलर का लाइट्स है व्हाइट कलर का लाइट है।